और एक गोदरेज की आलमारी भी रखी हुई है।

यह एक बहोत बड़ी बुद्ध भगवान की तस्वीर है।

यह एक क्रेट है जोकी इस क्रेट में बहुत से आलू रखे हैं।

क्योंकि इस मंदिर के सामने ही घास भी जम रहा है।

यह एक नाई की दुकान है।

और एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

ये एक बहुत बड़ी दुकान है।

यह एक बहोत सुंदर शादी का फंक्शन है।

जो कि इस कमरे में एक बेड पड़ा हुया है।